ये कोई पुराने ज़माने टाईप का पुराना अ पौराणिक टाईप का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है अ जो काफी म्म्म अच्छा बना हुआ है और काफी पुराना भी है।

और इसमें गुंबत दो गुंबत बने हुए हैं।

डंडी का व्यू है जो पग डंडी के जस्ट बगल मे बहुत सारे पेड़ हैं और --

और व्हाइट कलर के इसपे पेंट हुआ है और उस पे ग्रे कलर से हॉस्पिटल का नाम लिखा गया है।